और नदी के दोनों किनारो पर बहोत से पेड़ लगे हुए हैं कुछ घर भी है।

यहां पर बहोत से पौधे लगे हुए हैं पौधे पौधों में ऑरेंज और येलो कलर के फ्लावर लगे हुए हैं।

और इस पानी के आस पास बहोत सी घास लगी हुई है अलग अलग तरह के पौधे लगे है कुछ लंबी पत्तियो के पौधे इस तालाब के--

टेबल ओ प्लास्टिक के टेबल चेयर लगे हुए हैं ब्लैक कलर के ओर आस पास बहोत से पेड़ लगे हुए है।

जिस पर येलो कलर की लाइटिंग लगी हुई है बोहोत से लोग आगे की तरफ खड़े हुए भी हैं।

यहां पर एक शॉप है कपड़े की जिसमें अलमारियों में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं एक व्यक्ति कपड़े दिखा रहे हैं।

और अंदर की तरफ बहोत सारी बिल्डिंगे बनी है जो लाइट येलो और वाइट कलर की है बहोत जिसमें जो फ्रंट गेट है वो ब्लू कलर का है।

और सामने एक कैमरा लगा हुआ है। जिसका जो लाइट है येलो कलर का वह इन फोटोस पर पड़ता है सामने--

व्हाईट रेड कलर का सोफा रखा है कुछ पौधे रखे हुए है।

यहा पर एक जिम है जिम में बहोत सारी मशीनें --

रखी हुई है और सामने पूरी जो फ्रंट है वो कांच का बना है ऊपर की तरफ एकदम हल्की येलो लाइट है।

नीचे का फ्लोर ब्लू कलर का है और कांच के बाहर की तरफ एक तालाब है जिसमें पानी भरा है बहोत सारे आसपास हरियाली है।